और किनारे पर हमें घास दिख रही है कुछ पौधे और बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है सामने आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले रंग--

सामने हमे एक कार दिख रही है जो सफ़ेद रंग की है और रास्ता दिखाइ दे रहा है और कुछ पेड़ भी।

सामने हमे दरवाजे भी दिखाई दे रहे और खाली मैदान दिख रहा है जिसपे मिट्ठी पड़ी हुई है और कुछ बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग मे एक लाल रंग का एक गेट दिखाई दे रहा है और सामने हमे ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं जिसमे--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

इस इमेज मे हमे एक पार्किंग दिखाए दे रही पार्किंग मे हमे स्कूटी दिखाई दे रही और कुछ गड़िया दिखाई दे रही हैं एक सफ़ेद रंग की स्कूटी दिख रही हैं और--